ये है मंदिर है यहाँ ये पार्क है। यहाँ पे गांव कोई बड़ा सा फकंशन हो रहा है जिसको ये सब लोग देखने आए हैं और सब लोग देख कर यहाँ से --

ये आदि आपको यहाँ पे सामान दिख रहा होगा जो आप खा सकते हैंपी सकते हैं।